सब्जी रखी है सब्जी और प्लेट दोनों एक बेड पर दिखाई दे रहे हैं जो की लाल कलर की चद्दर है।

यहां हमे एक मार्केट नजर आ रही है इसमे नो पार्किंग का निशान भी नजर आ रहा है।

यह हमें एक मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा है इसमें एक कैंची दिखाई दे रही है।

जिसमे एक पेन भी दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सी मेडिसिन भी दिख रही है।